एक गाड़ी खड़ी हुई है कई सारे गमले खड़े लगे हुए हैं साइड से एक जीना भी है दो बंदे दिख रहे हैं बंद जीने पर चढ़ता हुआ दिख रहा है।

सामने एक बिल्डिंग दिख रही है ऊपर खुला आसमान है साइड से एक और बिल्डिंग है कुछ घास है हरे भरे पेड़ पौधे हैं।

हरे भरे पेड़ पौधे हैं खुला आसमान है कुछ पीछे मकान बने हुए हैं कुछ भट्टे के पास मकान हैं ईंटों के।

कई सारी गाय खड़ी है। कुछ व्हाइट गाय हैं कुछ का ब्लैक और वाइट कलर है मिट्टी का गद्दा सा भी हो रहा है पेड़ पौधे हैं सुख के सुख के।

जिम के प्रोटिंस वगैरा मिलते हैं तो जिम के पोस्टर लगा हुआ है।

यह एक पिक्चर है यहां पे रेड कलर की मशीन रखी है।

और कुछ लोवर टी शर्ट वगैरा मिलती हैं कुछ बॉक्सो में रखी हुई है।

बहोत बड़ा कंपनी टाइप में है जिम है एक साइड से--

यह एक शॉप है यहां पे ए_सी है कुछ सोफे पड़े हुए है कुछ मेज पड़ी हुई है कांच की।